और एक लाठी दिखाई दे रहे और एक नाव भी दिखाई दे रहा बहौत थोड़ा सा।

यहां पे हमको एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे रेस्टोरेंट --

यहां में एक ठेला में बहोत सारा फल लोग रख के दिखाई दे रहा है हमको अलग अलग टाइप का।

और व्हाइट कलर का कपड़ा पेन के हैं।

सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

और ये गमला भी लोहा वाला है।

और इंसान लोगों को सारा दिखाई दे रहा है अंदर मे--

इसमें हमको एक जगह दिखाई दे रही है उसमें दो ठो घर दिखाई दे रहा है हमको एक बाम्बू से बना हुआ घर।

ये य जो फुल व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है हमको।

और साइड में वॉल और बहुत सारा घर लोग है।

सूखा पत्ता भी टांगा गया है ऊपर में।

वे घर कलर जो ब्लू कलर में है और सीलिंग दिखाई दे रहा है।

यह अलग अलग तरीका का बहुत सुंदर वाला पेड़ लोग हैं।

तीन ठो रखे हैं इसमें।

यहां में हमको एक सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

और यहां में बड़ा वाला घर दो ठो है दो बिल्डिंग --

और कच्चा घर दिखाई दे रहे हमको एक।

अंदर जो है व्हाइट कलर में है।